जहां पर आधार से पैसा जमा किया व निकल जाता--

जिसका नाम डॉक्टर सशांक जनक दवाखाना और--

यह एक पेट्रोल पंप है यहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है जो कि अह पेट्रोल भरवा--

शाम का समय हैं सूर्य अस्त हो रहा हैं।